कॉलेज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहां स्टेशन जैसा स्टेशन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो पिंक कलर का है ऊपर में --

है स्टैंड में लगा हुआ है एक लोग ओटो को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओटो ब्लैक कलर में है।

ऐड करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें उसका फेस हाइड है और इलेवंथ --